देख लो और पानी हरा है पानी ऊपर से नीचे झरने से ऊपर नीचे की ओर आ रहा है और अ क कहीं जा रहा है।

लाइट के तार बाहर निकले हुए हैं। बॉक्स अंदर लाइट फिटिंग भी नहीं हुई है। प्लाई यहाँ पर स्टार्टिंग है अभी।

एक सफ़ेद कलर एक सफ़ेद कलर की शर्ट पर ब्लैक कलर की डिज़ाइन है और ब्लैक कलर से कुछ लिखा हुआ है और लाल कलर से भी इसमे कैप है। काफी अच्छी लग रही है सर और आप पहनो इसमे कम्फर्टेबल फील --

खाने पीने कोल्ड ड्रिंक पानी की बोटल एक आदमी भी है और लाइट भी अच्छी है। काउंटर भी मस्त बना है। काफी खर्चा हुआ हुआ --

ये खूब बड़ा-सा शोरूम है। यहाँ पर कपड़े मिलते हैं और यहाँ पर छोटे-बड़े साइज़ के कपड़े मिलते हैं। जीन्स कपड़े टी-शर्ट लाइट भी रखी हुई --

यहाँ प दे बोहोत सारे बच्चे अपना खेल कूद के सब कुछ कर रहे है। कोई व्यायाम कर रहा है कोई खेल रहा है कोई और कुछ कर रहा है।

अंदर खाना चल रहा और काफी लोग मेन गेट पर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर बोहोत से लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और लाइट भी लगी हैं यहाँ पर।

एक सामने पानी की टंकी दिख रही है और यहाँ पे एक्टिवा बोहोत सी मोटरसाइकिल स्कूटी सब खड़ी --

ये ओरई का पेट्रोल पंप है | एचडीएफसी बैंक के जस्ट सामने यहाँ पे ख्वाजा मेडिकल का बो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर --

एक आगे मशीन लगी है। एक पीछे गुबाड़े भी लगे हैं और दिवलों पे लाइट लगी हुई है बगल में फोड़वा टाइप का रखा है। एक ऊपर सूर्य प्लेट रखी --

नदी का पुल ओवर-ब्रिज है यहाँ पर नदी गयी है ब्रिज से। ओवर-ब्रिज बना है।